मुझे इस इमेज में एक मंदिर दिखाई दे रहा है पूरा मंदिर वाइट कलर का है इस मंदिर के ऊपर एक उमज भी है।

इस इमेज में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के अंदर --

इस इमेज में मुझे बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो एक मकान के ऊपर प्रिंट कर रहे है।

और उसके आइट -साइड खम्बे भी लगे हुए है इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है यह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

मेट दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है इ --

इस में बड़े-बड़े बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे है और इसमें कुछ लोहे के खम्बे भी दिखाई दे रहे है।